inspection and comparison of git पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे:
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट editor उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको terminal पर रन होने वाली लिनक्स commands की जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित लिनक्स tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
अब git diff command से शुरू करते हैं
यह command files के वर्तमान status के बदलावों को दिखाएगी
अब मैं आपको दिखाऊँगी यह कैसे ctrl करता है terminal खोलने के लिए ctrl + alt + t दबाएँ
हम अपनी git repository mywebpage पर जायेंगे जो हमने पहले बनाई
type करें: cd space mywebpage और enter दबाएँ
मैं प्रदर्शन के लिए html files का उपयोग जारी रखूँगी
आप अपनी पसंद का कोई भी file type उपयोग कर सकते हैं
पहले html फाइल history html बनाऊंगी और प्रदर्शन के लिए इसे commit करुँगी
type करें: gedit space history html space ampersand और enter दबाएँ
मैं अपने पहले सेव किये हुए writer document से इस फाइल में कुछ code copy और paste करुँगी
अब file को सेव और बंद करें
याद करें कि जब भी हम कोई file जोड़ते या मिटाते हैं तो हमें अपना काम commit करना है
staging area में file जोड़ने के लिए type करें: git space add space history html और enter दबाएँ
अपना काम commit करने के लिए type करें: git space commit space hyphen m space double quotes में added history html और enter दबाएँ
अब git log देखते हैं टाइप करें git space log और enter दबाएँ
वर्तमान में हमारी repository में हमारे पास दो commits हैं
अब mypage html और history html files खोलते हैं टाइप करें gedit space mypage html space history html space ampersand
यहाँ mypage html वो file है जो हमने पिछले tutorial में बनाई enter दबाएँ
add इन files में कुछ लाइनें जोड़ते और मिटाते हैं
फिर files को सेव और बंद करते हैं
कुछ स्थितियों में हमें याद नहीं रहता कि हमने अपनी files में क्या बदलाव किये हैं
अब git status check करते हैं टाइप करें git space status और enter दबाएँ
यह केवल रूपांतरित फाइलों के names दिखाता है लेकिन हमें any विवरण नहीं मिल पाता
हम वास्तविक बदलाव जानना चाहते हैं जो इन files पर किये गए हैं अब देखें कि इसे कैसे check करते हैं
type करें: git space diff और enter दबाएँ
यह command files के वर्तमान स्टेटस की नवीनतम commit के साथ तुलना करेगी
यहाँ आप history html फाइल के दो संस्करण देखेंगे
a slash history html आखिरी commit का संस्करण है और यह माइनस साइन से प्रदर्शित होता है
b slash history html वर्तमान state का संस्करण है और यह plus साइन से प्रदर्शित होता है
अतः यहाँ माइनस साइन के साथ लाल रंग की line पुराना संस्करण है
और plus साइन के साथ हरे रंग की line नया संस्करण है
अधिक देखने के लिए down arrow दबाएँ
ये वो लाइनें हैं जो हमने नए संस्करण में जोड़ी हैं
आप mypage html फाइल के बदलावों को भी देख सकते हैं down arrow की दबाएँ
exit के लिए q की दबाएँ
यहाँ output रंगों में दिखता है
अगर हम लाइनों को रंगों में नहीं देख सकते तो type करें: git space config space hyphen hyphen global space color dot ui space true और enter दबाएँ
अगर हम रंग नहीं देखना चाहते हैं तो कृपया इस command में true के बजाए false प्रयोग करें
type करें git space diff और enter दबाएँ अब output रंगों के बिना दिखाता है
आगे मैं आपको दिखाउंगी कि एक विशेष फाइल में बदलावों को कैसे देखते हैं
type करें: git space diff space history html और enter दबाएँ
यहाँ हम केवल history html file में बदलाव देख सकते हैं
add अपनी files को staging area में जोड़ते हैं type करें git space add space history html space mypage html और enter दबाएँ
दोबारा git diff check करते हैं टाइप करें git space diff और enter दबाएँ
इस समय हमें कोई output नहीं मिलता क्योंकि हमारी files staging area में जोड़ी गयी हैं
ऐसी स्थिति में हम type कर सकते हैं git space diff space hyphen hyphen staged और enter दबाएँ
अब हम वैसा ही एक output देख सकते हैं जैसा हमें git diff command में मिला था
हम we परिणाम प्राप्त करने के लिए hyphen hyphen staged के बजाए hyphen hyphen cached भी उपयोग कर सकते हैं
how वर्तमान state की तुलना किसी भी पिछली कमांड से कैसे कर सकते हैं
पहले हम git log देखेंगे टाइप करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
अब मानिये मैं अपनी वर्तमान state की तुलना initial commit से करना चाहती हूँ
तो type करें: git space diff space फिर initial commit के commit hash को copy और paste करें और enter दबाएँ
यहाँ हम अंतर देख सकते हैं
इस तरह से हम अपने वर्तमान state की तुलना हमारी repository में किसी भी पिछली commit से कर सकते हैं
इस तरह से हम git diff command प्रयोग करके संशोधित files में सभी बदलावों को देख सकते हैं
यह हमारी यह निश्चित करने में मदद करता है कि कमिट करने से पहले हमने ठीकठीक क्या बदलाव किये हैं
इस point पर हम अपना काम freeze करते हैं
commit के लिए type करें: git space commit space hyphen m space double quotes में added colors और enter दबाएँ
आगे सीखते हैं कि दो commits के बीच अंतर कैसे देखते हैं
अब git log check करते हैं टाइप करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
type करें: git space diff space फिर initial commit के commit hash को copy और paste करें space अब added colors के commit hash को copy और paste करें एंटर दबाएँ
अब दो the हुए commits के बीच अंतर देखा जा सकता है
आगे हम आखिरी revision की आखिर से दूसरे वाले revision के साथ तुलना करेंगे
type करें: git space diff space head space head tilde और enter दबाएँ
head वो आखिरी रिवीजन दिखाता है जो commit message added colors रखता है
head tilde आखिर से दूसरा वाला वो रिवीजन दिखाता है जो commit message added history html रखता है
latest नवीनतम रिवीजन हमेशा head होता है latest1 नवीनतम से पहला रिवीजन हमेशा head tilde होता है
इसी तरह latest2 रिवीजन नवीनतम से दो पहले head tilde 2 है latest3 रिवीजन नवीनतम से तीन पहले head tilde 3 है और इसी तरह आगे भी
terminal पर वापस आते हैं
अब git show command के बारे में सीखते हैं जो commit के सारे विवरण को दिखाने में मदद करता है
type करें: git space show और enter दबाएँ
यह command repository में नवीनतम commit के विवरणों को दिखाएगी
यह दिखाता है कि commit विवरणों के साथ files में क्या बदलाव किये गए हैं
यह विशेषता तब उपयोगी होती है जब हम सहयोग से काम करते हैं
अब git log देखते हैं टाइप करें git space log space hyphen hyphen oneline और enter दबाएँ
initial commit के विवरणों को देखने के लिए type करें: git space show space फिर initial commit के commit hash को copy और paste करें और enter दबाएँ
यहाँ आप initial commit के विवरणों को देख सकते हैं
इस तरह से हम अपनी repository के किसी भी commit का विवरण देख सकते हैं
आगे हम सीखते हैं कि file की पूरी history कैसे देखते हैं
mypage html की पूरी history देखने के लिए type करें: git space blame space mypage html और enter दबाएँ
यहाँ हम mypage html file की पूरी history यानि निर्माण से वर्तमान stage तक देख सकते हैं
इसी तरह आप अपनी repository में किसी भी file के सारे विवरण देख सकते हैं
अंततः हम देखेंगे कि git से कैसे मदद मिलती है
मदद प्राप्त करने के लिए syntax निम्न प्रकार है
उदाहरण के लिए: git help show
अब मैं इसे दिखाती हूँ terminal पर वापस जाएँ और type करें: git space help space show और enter दबाएँ
यहाँ हम show command का मैन्यूअल देख सकते हैं
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसे सारांशित करते हैं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
नियत कार्य में निम्न commands का अन्वेषण करें:
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है और online tests pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है